यहाँ कुत्ते को सुलाए गए हैं और दो व्यक्ति हाथ मे ग्लाब्स पहने हुए हैं और कुत्ते को इन्जेक्शन दे रहे हैं ।

यह एक ठेला है जिसमे ठेले पर ढेर सारे फल रखी हुइ है सेब है केला है और मम निंम्बू है।

एक बड़ा सा पुल है जो पुल लोहे का बनी हुई है। पुल के नीचे ढ़ेर सारे पानी हैं और उसमें तीन चार पत्थर के टुकड़े र टुकड़े लाइन से रखी हुई है और उस पत्थर के टुकड़े पर एक लड़के खड़े हैं।

यह एक सैलून है। सैलून के अंदर एक व्यक्ति चेयर पे बैठे हुए हैं। उनका चादर का कलर ब्लू है और एक व्यक्ति बाल काट रहें हैं।